यह एक कोलेज है कोलेज के बहार लोहें का गेट बना हुआ है।

उसमे एक आदमी खड़ा हैं एक आदमी कम कर रहा हैं एक आदमी बेड को खीच रहा हैं।

कोई आदमी मसाला बना रहा है। कोई माथा पे उठाया हुए है। कोई नीचे गिरा रहा है। कोई उसको बना रहा है। पीछे दी-- घर नजर आ रहा है।

बनने के लिए आया है इस में मशीन में प्रॉब्लम हेे चेन से आपनी मशीन को निकाल मशीन को निकला जा रहा हेे एक मेकेनिकल उसको निकल रहा हे।

यह एक होल है। जिसमें दिवार है। पीछे मूर्ति टंगा हुआ है। कुछ आदमी खड़े है।

अंदर की ओर लाइट जल रहा है आगे की और खिड़की है | मने हर एक तरह का कपड़ा दिखाई दे रहा है।

जिसमे रोड पर कुछ गाड़ी लगा हुआ है | साईकिल से लोग इधर-उधर आ रहे हैं जा रहे है | कुछ सामान भी खरीद रहे हैं।

यह एक मोल नज़र आ रहा है जिस मोल में बहुत प्रकार की लाइट ते गल रही है सीड़ी भि नजर आ रहा है।